सीलिंग में ढेर सारे वाइटस लाइट जल रहे हैं।

इस तस्वीर में ढेर सारे कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं कुर्सी ब्लैक कलर का है।

पीछे पिलर्स में लेस का पोस्टर लगा हुआ है बाहर बोरी धरी हुई है।

ईसा लगा हुआ है। सैलून सामग्रियां धरी हुई हैं।

दीवाल का कलर ऑरेंज कलर है लड़का डेनिम शर्ट पहना हुआ है।

और बगल में बच्चे हैं जो सांता क्लास के टोपी पहने हुए हैं।

यों बीच में छोटे छोटे पौध और घास उग गए है।

इस तस्वीर मे एक बड़ा सा गेट दिख रहा है जो काफी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है।

तस्वीर में छोटे बड़े बड़े पत्थर हैं। एक लड़का जा रहा है। ब्लू ट्राउजर आसमानी टी सर्ट पहना हुआ है।

इस तस्वीर में तीन बच्चा बैठा हुआ है एक आंटी हाथ में कप ले के बैठी हुई है।

पीछे पर्दा लगा हुआ है सामने एक आदमी खड़ा है लेफ्ट में ढेर सारे सीसे लगे हुऎ हैं और--

किला दिखाई दे रहा है। बैग्स दिखाई दे रहे हैं। बड़ा-सा जाली वाला दीवाल बना हुआ है।

कुछ आदमी दिख रहे हैं कुछ बाइक्स खड़ी है नीचे काफी साफ है आसमान पूरा ग्रे है।

यह एक कार वाशिंग सेंटर का तस्वीर है यहां पर एक स्कॉर्पियो को एक डंडे के सहारे से उठा दिया गया है।

स्कॉर्पियो हवा में है बीच में एक स्टील का डंडा है।

पीछे और भी ढेर सारे घास हैं आदमी के हाथ में घड़ी है आदमी खाली पैर है।